एक पेड़ है दूर कोई एक--

चाय और ब्रेड पीता हुआ नजर आ रहा है।

जिम के सामान रखे हुए हैं।

एक भैंस हैं और एक भैंस का बच्चा भैंस के बच्चे के आगे --

सीने पोलिस दिखाया जा रहा--

यह जरूर ही परदों की दुकान होगी।

लोगों ने कपड़े सुखाए हुए हैं अपनी बालकनी में किसी की बालकनी में कूलर भी है।

अवश्य ही घर भी बनायी--

इन्हें बहोत ही खूबसूरती से डिस्प्ले किया गया--

एक वाटर फॉल नज़र आ रही है।

फिफ्टी फोर के बराबर होता है।

तो भला ग्यारह मिनट पांच सेकेंड --

कहीं मेरी आवाज ही ना चली जाए।

किसी स्कूल का कॉरिडोर नजर आता है।

कोई शो पीस की दुकान नज़र आ रही है।